अ कुछ समारोह होते नजर आ रहा है वहाँ पे परदे लगे हुए पिंक कलर का उसमे अ डेकोरेशन किया हुआ है लाइट्स का उसपे फूलों से भी कुछ डेकोरेशन किया हुआ है वहाँ पे एक आदमी खड़ा है उसने टाई सूट पहना हुआ है एक --

और उस पुतले के पीछे एक घर जैसा दिख रहा है वहां पे कुछ रेड रेड कलर के टंगा हुआ दिख रहा है और वहां पे दो तीन आदमी भी दिख रहे ब ब बगल मे एक पेड़ दिख रहा है दिन का समय है।

एक मेला लगा हुआ दिख रहा है उसमे बहोत सारे अ-जो है खेलने के पालने लगे हुए दिख रहे हैं म्यूजिक डांस का पालना दिख रहा है दिख रही है।

वहाँ से एक आदमी अ आता हुआ नज़र आ रहा है और एक आदमी नीले कलर का सर्ट पहना हुआ दिख रहा है। और वहाँ पे कुछ बोर्ड लगे हुए हैं बोहोत सारी किताबे लगी हुई हैं। ऊपर की तरफ़ भी कुछ बोर्ड लगे हुए --

किताबों का मॉल जैसा दिख रहा है ऊपर से ट्यूबलाइट चालू दिख रही है नीचे ब्लैक कलर के रैक्स हैं रैक्स में बहोत सारी किताबे र-रख रखी हुई हैं फाइले रखी हुई हैं।